टायरे भी लगी हुई नजर आ रही है।

इस दृश्य में एक बिरियानी शॉप नजर आ रहा है जिसका नाम हैदराबादी जायका बिरियानी शॉप है।

सेलिंग का कलर ब्लैक है और यहां पे दो व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं और--

इस चित्र में एक सोफे का शो रूम दिखाई दे रहा है।

एक सड़क भी नजर आ रही है जिसके बाहर एक मोटरसाइकिल लगी हुई नजर आ रही--

जो के हरे रंग के हैं और एक घर भी नजर आ रहा है।

दो बाइक भी लगी हुई नजर आ रही है जिसका रंग ब्लैक एंड ब्लू है।

ब्लैक है और आसपास में बहोत से बिल्डिंग भी नजर आ रहे हैं।

और बहोत से लाइट भी जलती हुई नजर आ रही हैं।

और सोफे भी लगे हुए नजर आ रहा है और सेलिंग में लाइटें भी जल रही है।

और आसपास में पेड़ पौधे भी लगे हुए नजर आ रहे हैं।